हां ये घर के बाहर इसका पोस्टर लगा हुआ है इधर कार पार्क किया गया है।

और अ वो ऑफिस येल्लो रेड कलर दिखाई दे रहा है ऑफिस के पीछे एक पेड़ भी दिख रहा है।

और इसका गेट दिख रहा हैं और ऑफिस वाली मोमेडीयन हैं ।

और इसके किनारे एक मगरमच्छ लेटा हुआ है।

इसकी लाइटिंग बहोत अच्छी लग रही है ये कोई होटल का रूम है।